ये बहुत बड़ा घर है यह घर चारो ओर से बनाया गया है इस घर की छत पे तीन चार लड़के खड़े है और इस घर के आँगन में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है इस घर के बगल में बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा कोचिंग क्लास है इस क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इस कोचिंग क्लास के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसके अन्दर में एक आदमी खड़ा है और यह पर बहुत सारे बच्चे आये हुए हैं ।

मंदिर है इस मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ है यह मंदिर अभी बंद है इस गेट में दो ताले लगे हुए है और यहाँ एक लड़का खड़ा है जो की इस मंदिर के बाहर से फोटो खिंच रहा है।